चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है ऊपर की तरफ साफ आसमान भी दिखाई दे रहा है कुछ छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हुऐ हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बहार एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है घर का गेट खाफी बड़ा दिखाई दे रहा है और घर के बहार की और बाउंड्री वॉल --

रोड में एक चार पहिया वाहन का सीसा भी दिखाई दे रहा है बस्ती काफी बड़ी दिख रही है और इसपे कई सारे घर बसे हुए दिख रहे हैं।

पर एक बड़ी सी बिलिंग दिखाई दे रही है जिसके जिसमें एक होटल भी खुला हुआ है और नीचे एक बैंक और एक आई ऐ.टी.एम. खुला हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पे एक होटल दिखाई दे रहा है जिसके की चारों तरफ कई सारे रंग बिरंगी लाईट जल रहीं हैं और इसकी छत पर एक टावर बना है छत के टावर के ऊपर भी एक टंकी रखी --

एक किसी ऑटो के शोरूम के अंदर एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की एक इ-ऑटो है इस ऑटो का रंग पीला और काला है और --